और एक पंखा भी लगा हुआ है और एक खिड़की भी है और खिड़की के नीचे कुछ गमले रखे हुए हैं।

यहां पे लगी हुई है और कुछ सरिया भी पड़ा हुआ है।

और बराबर में कुछ पेड़ भी लगे हुए हैं।

और ऊपर कुछ गुड्डे भी लगे हुए हैं।

और नीचे ट्रेन की पटरी है।

वहां पे एक लाइट भी बल रही है और नीचे कुछ सामान भी रखा हुआ है।

पीछे गेट सा बना हुआ है और वहां पे कुछ ओढ़नी भी टंगी हुई है।

कुछ बाइक भी खड़ी हुई है और उसके पास में एक औरत भी खड़ी हुई है।

और नीचे कुछ ईंटी भी रखी हुई हैं।

इसमें जिम की मशीन भी रखी हुई है।

ये एक रूम है और इसमें नीचे कुछ हरे कलर की मैट लगी हुई है।

यहाँ पे कुछ लेडीज़ डांस कर रही हैं और उनके चेहरे पे कुछ ब्लर लगा हुआ है।

पीछे कुछ तस्वीरें सी भी उतारी हुई हैं और इनके नीचे एक हरे कलर का मैट भी बिछा हुआ है।

और यहां पे चार खिड़कियां भी लगी हुई है।

ये एक बड़ा सा भवन है और इसमें बहोत सारी खिड़कियां लगी हुई हैं।

और इस पे दो आदमी बैठे हुए है।

ये एक रेस्टोरेंट है और इसमें कुछ मेज रखी गई है।

और नीचे एक हरे कलर का मैट भी बिछा हुआ है।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

और इनके पास में एक तिरंगा भी लगा हुआ है और सामने कुछ खिड़की लगी हुई है।

ये एक रेस्टोरेंट है और इसमें एक बोर्ड लगा हुआ है और एक गेट भी लगा हुआ है।

ये एक बड़ी सी दुकान है और इसमें फिटिंग बनी हुई है।

और उनमें में कुछ डब्बे रखे हुए हैं और कुछ बोतले रखी हुई हैं और कप भी रखे हुए हैं।

और एक बाल्टी भी रखी है और कुर्सी भी रखी हुई है।

ये एक नाई की दुकान है और इसमें दो कुर्सियां रखी हुई है।

एक बोर्ड भी लगा है लोहे का और कुछ पेड़ भी लगे है।

ये एक दुकान है और इसमें एक काउंटर रखा हुआ है।